एक महल टाइप का कुछ दिख रहा है जिसमें बहुत सारे बालकुनी हैं।

ईंट के अ नीचे रास्ते टाइप बने हुए हैं इक लड़की खड़ी है ऊपर आसमान दिख रहा है।

एक ट्रॉफी का स्टेज टाइप्स का है जिसमें बहुत सारे ट्रॉफीयां हैं।

के लिए हो रहा है बगल में एक गमला पे दु क फू गाछ लगाया गया है एक और--

और चनाचूस है फेयर एंड लवली है उसके पाउच है डब्बा है कुछ बिस्किट्स को अभी भी पैक किए हुए हैं पूरे तरह से एक डब्बा कूड का ऊपर रखा हुआ है कोकोनोट कुकीज जिसमें है क्रीम्स के डब्बे हैं ब्रेड है।

एक लड़का जो फोटो खींच रहा है।

बहोत सारे कुछ बुजुर्ग आदमी खड़े हैं ओल्ड टाइप के--

और कुछ कच्चे रास्ते दिख रहे--

कारपेट टाइप का बिछा हुआ जो आसमानी और रेड पे है और पीछे कुछ फोटोस टाइप्स के--

दो नाव है एक नाव पर दो नाव पे दो आदमी बैठे हुए दो आदमी चला रहे है उस नाव को एक आदमी व्हाइट शर्ट और लुंगी पेहने हुए है।

कुछ हा ब्लू ब्लू टाइप्स के शर्ट पहने हुए वो भी नाव को चला रहा है वो एक आदमी अपने नाव पे कुछ --

कुछ घर दिख रहे हैं ऊपर एक बैठने का--

एक दीवाल है जिस दीवाल पर बहोत कुछ लिखा हुआ है।

बड़ा सा कुछ नदी टाइप का दिख रहा है।

टावर दो तीन हैं एक पोल है।

एक घर टाइप्स का दिख रहा है जिसमें लाइटिंग का पूरा--

जिसके बीचों बीच में अ छोटे छोटे--